एक कार शोरूम है और यहां पे कार पार्किंग है।

यह कपड़े का दुकान है और अच्छा मॉल है सजावट तो बहोत मस्त है अभी तक लगता है सैलरी इसका सेलिंग वगैरा नहीं हुआ है।

मन्दिर है गेट बना हुआ है और यह पंचदेव मंदिर है जो कटिहार में पाया जाता है।

तब ना बोलेगा कि मेरा घर में दादा जी मेरा पापा मेरा--

यह लोग बाहर स्नान कर रहे हैं पहाड़ पे--

हिल है और यहां पे मॉर्निंग वॉक होता है मॉर्निंग वॉक लोग करके अपना शरीर को स्वस्थ करते हैं स्वस्थ नहीं करेंगे।